गेट पे रहली बहोत सारे लोग खड़ी हुई नजर आ रही है।

इसमें अलग अलग रंगों के छोटे छोटे मकान बने हुए है।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

इसमें हमें बहुत सारी डेकोरेशन बैलून से की हुई दिखाई दे रही है।

इसमें पोस्टरस भी लगे हुए हैं जिनके ऊपर पिज्जा लिखा हुआ है।

रूम्स में हमें लाइट्स भी लगी हुई नजर आ रही है।

इसमें दो लोगों की मैरिज हो रही है।

हमें बहोत सुंदर डेकोरेशन भी की हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में हमें एक वाइट कलर की इमारत नजर आ रही है।

पेड़ भी उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह कोई फूड शॉप भी हो सकती है।

कैफे में हमें कोई भी लोग नजर नहीं आ रहे--

पर आसमान भी बहोत सुहावना है।

जिसके ऊपर हमें बहुत सारे लोग--